यहाँ पर इक बोट है उस बोट में काफी सारे लोग है ये सनसेट का टाइम है।

यहां पर रोजाना बहुत भीड़ रहती है।

ये एक शहर का फोटो है इस फोटो को ऊंचाई से लिया गया है | यहां पर काफी सारे मकान और बिल्डिंगे दिखाई दे रही है सामने की तरफ एक खाली प्लॉट है उस प्लॉट में एक बड़ा सा पेड़ है।